सुदीप मिष्ठान भंडार अंदर एक अंकल खड़े हुए हैं कुछ खरीद रहे हैं मिठाई खरीद रहे हैं|

यहाँ पर बोहोत सारे फूल है। हर कलर के फूल है यहाँ पर लाल कलर क पीले कलर का सफेद कलर का।

सामने बहोत सारे घर बने हुए हैं यहां पर बीच में एक खंबा भी खड़ा हुआ है लाइट का ।

यहां पर पीछे एक भैया भी खड़े हुए हैं यहां पर पीछे एक बोहोत बड़ा पहाड़ है पीले कलर पीले कलर की मिट्टी है उस पहाड़ में।

जिन्होंने पीठ के ऊपर एक बैग टांगा हुआ है जिन्होंने जूते पहन रखे हैं।

बहुत सारा पानी भरा हुआ है यहाँ पर। इसमें नाव भी चल रही है। उस साइड घर भी है और पेड़ हैं। बहुत बड़े-बड़े पेड़ है यहाँ पर।

यहां पर तीन लोग खड़े हुए हैं। यहां पर एक बस लगा हुआ है एक लगी हुई है। नीचे पानी बिखरा हुआ है। यहां पे एक रिक्शा भी खड़ा हुआ है पीले और काले कलर का।

अच्छे पेड़ हैं। यहां पर साइड में आगे भी एक छोटा सा पेड़ है। यहां पर ग्राउंड में एक लड़का को साइकिल पर बैठा हुआ है जिसने --

यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है बीच में मेन स्टैंड पर यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए हैं साइड में जिन्होंने चप्पल पहन रखी है और व्हाइट कलर की --

लाइट लगी हुई है बड़ी सी। यहां पर एक पंखा लगा हुआ है ब्लैक कलर का।

यहां पर आगे कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर आगे भी बैनर लगा हुआ है। जिसपे लिखा हुआ है भानु ईको सर्विस सेंटर । इसमें साइड में एक शटर भी है। जिसपे लिखा है पीआरसी सीमेंट ।

यहां पर बोहोत सारी बोरियां रखी हुई हैं हरे कलर की गुलाबी कलर की नीले कलर की बोरियां रखी हुई हैं जिन पे एमआरपी भी लगा हुआ है रुपीज थ्री फिफ्टी फाइव ।

यहाँ पर नीचे कुछ छोटी-छोटी हल्की-हल्की सी दुबा भी है यहाँ पर।

यहाँ पर लाल कलर का कुछ है जिसपर आई.एन.आर.आई. लिखा हुआ है।

यहाँ पर बोहोत सारे पत्थर हैं। बोहोत छोटे-छोटे पत्थर हैं यहाँ पर और बोहोत ज्यादा बड़े-बड़े पत्थर हैं। यहाँ पूरे यहां पर पूरा जंगल है।